इसे दिखाई दे रहे हैं लाइटें दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे बहुत सारी छोटी और बड़ी एसीया दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे दो दुकाने दिखाई दे रही है एक मीटर दिखाई दे रहा है।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

इसे दिखाई दे रहे हैं एक दरवाजा दिखाई दे रहा है एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

दो भैंसें दिखाई दे रही है पीछे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

खिड़की दिखाई दे रही है एक साइकल दिखाई दे रही है।

दो आदमी बैठे हुए हैं चेयर रखी हुई है एक डंडा रखा हुआ है।

नीचे कुछ घास फूस दिखाई दे रही हैं कुछ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

दो आदमी दिखाई दे रहे हैं एक सड़क दिखाई दे रही है।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

ऊपर एक टिन की छत दिखाई दे रही है।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

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है एक एक्टिवा दिखाई दे रही है।

एक मैट बिजी हुई है घंटियां लगी हुई है।

यहां पर मुझे एक शोरूम दिखाई दे रहा है। शोरूम के बाहर बोहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

एक औरत एक आदमी दिखाई दे रहा है सामने एक एल_इ_डी लगी हुई है पंखे लगे हुए हैं।

एक बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है बहुत सारी विंडो दिखाई दे रही है।

बहुत सारी शर्ट दिखाई दे रही है गत्ते के कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कुछ घास फूस दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बच्चों गेले गले में कुछ टाई दिखाई दे रही है बेंचे दिखाई दे रही है सीटें दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे काफी सारी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक जिम दिखाई दे रही है जिम के अंदर बहुत सारी वर्जिश करने की मशीने दिखाई दे रही हैं।

पीछे कुछ कमला पसंद टंगा हुआ है और रखी हुई है।